ऊपर बहुत सारी लाइटें जगी हुई है।

यहां पे बहुत सारा अह गेम्स भी दिख रहा है जो काफी कलरफुल दिख रहे हैं।

छोटे छोटे बच्चों के कपड़े दिख रहे हैं।

दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कमरा दिख रहा है।

यहां पे एक बेड रखा हुआ दिख रहा है।

बेडरूम के अंदर लाइटें जली हुई दिख रही है।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

एक हरा कलर का खम्बा भी दिख रहा है।

पीछे एक स्टैचू दिखाई दे रही है।

यहां पे छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए दिख रहे हैं।

पीछे एक औरत खड़ी हुई है और काउंटर के अंदर एक आदमी खड़ा है काउंटर के बाहर एक आदमी खड़ा है।

वहां पे एक आदमी साइकल के ऊपर बैठे जा रहा है।

और तालाब के अंदर दो डक दिखाई दे रहे हैं।

यहां पानी के ऊपर कुछ पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

यह बिल्डिंग के ऊपर एक नीला कलर का बोर्ड देख रहा है।

अ पूरा रात जैसे दिख रहा है।

एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर बहोत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जिसका नाम चूल्हा चौकी दा ढाबा लिखा हुआ दिख रहा है।

यह काउंटर के अंदर दो आदमी बैठे दिखाई दे रहे हैं।

बगल में एक कॉफी की दुकान जिसका नाम थर्ड वेव कॉफी लिखा दिख रहा है।